गेट है उसमें खिड़कियाँ है ।

टी है एक बोर्ड लगा हुआ है उस के सामने एक रोड है और गार्डन है।

उपर छत के उपर वाइट छत है उ --

कुछ घोड़े है उन के उपर कुछ लोग बैठे हुए है ।

यहाँ पर बहुत सारे घर है जहाँ कि--

यहाँ पे बड़ी -बड़ी ब्रेंचिस है।

कुछ लाइटे लगी हुई है कांच के गेट है ।

ई शटर लगी हुई है और ई एक लकड़ी की सीढ़ी है कुछ घर ए है।